ओर यहाँ पे मोमबत्ती एक जल्ला अगरबत्ती है नारियर है और दो व्यक्ति देख रहे है एक व्यक्ति काम कर रहे है।

खाना भी खराब है ठीक हो जाएगा और लाल रंग मे कार है पीछे पूरा टीना का कुछ चराया हुआ है।

यहां कोई फोर-जी का दुकान है जिसमे सीम ओम मिलता है और इसमे कुछ भी आप समान ले सकते हैं आके। देखिए कितना खूबसूरत नजारा---

यह बड़ा एक छोटा एक उससे भी छोटा ये दीपली है जिसमे तेल डाल के जला सकते है भगवान के --

वहां पे पर्दा पे मूवी चल रहा था एक आदमी चसमा लगा के इधर बेठे हुए देखिये मूर्ति भी रखा हुआ है देख सकते है काफी सुंदर नजारा है।

देख सकते है ये ग्राउन्ड का ऊपर लाइट भी लगा हुआ है और हरी-भारी घास भी है और हरी-भरी पौधे भी है।